जो हमारे छोटे-मोटे ग्राहकों का लेन-देन होता है वह यहाँ पर लोन भी दिया जाता है। जिससे गरीब व्यक्ति अपनी पुत्रियों की शादी में उस धनराशि का यूज़ करते हैं।

मुझे एक बच्चों का पार्क है। जहाँ पर छोटे-छोटे बच्चे खेलने जाते हैं और जिसे खेलने से उन्हें प्रसन्नता मिलती है। अपने मन को खुश करते हैं और ये बोहोत ही प्यारा पार्क है। जहाँ पर बच्चे खेलते हैं बैठते हैं और दोस्तों के साथ --